नाई की दुकान में फेशिअल करवाता आदमी और फोटु भी खैंच रहा मजा ले रहा है जिंदगी का पूरा चश्मे भी धरा बटुआ भी धरा कैंची भी धरि दो फुवारा भी धरा आर --

जे.सी.बी. मिट्टी हटा रही है मिट्टी लोहे के पाइप है भाई ये।

महजिद है भईया मीनार भी है महजिद पे महजिद के बगल में पेड़ है और खंभा है। खम्भे पे केबल टंग रहा।

खेत में पानी भर रहा भाई ये बच्चा घूम रहा पानी में में चल रहा कुछ घांसे सी भी दिखाई दे रही है पानी में --

मजा आया भाई पानी में कैसे महसूस कर रहा मेरे भाई पानी मे घुस रहा है भी दिख रही है पानी --

मंदिर है भाई मंदिर घना बढ़िया मंदिर एक दिन एक तस्वीर है एक जगह तीर एक जगह काली माँ है एक जगह और है।